कतारी भी बाँधे हुए हैं एती गमछा से और आदमी भी इधर-उधर पूरा घूम रहे हैं और उस छोटे-छोटे मंदिर भी बने हुए हैं बन रहे हैं।

ये एक ब्यूटी पार्लर है जो की बहोत सारे इसमें गुब्बारे टंगे हुए हैं ।

और इसमें एक दो चेयर है जो कि बहोत ही अच्छा दिखाई दे रहा है और ये लग रहा है बहोत ही--

दिखा रहे है दे देख रहे है और खरीद भी रहे है और यहाँ--

वन मंथ इक्टर इंटर इंटेस्ट फ्री पर आदमी भी इधर-उधर घूम रहे हैं और बाइक भी बहोत से दिख--